बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत अच्छा मंदिर है पेड-़ पौधा है बहुतॆ अच्छा दिख रहा है मंदिर है बहुत अच्छा दिख रहा है आसमान--

कार है किसी के घर के पास हाता है दॆवाल है कार है बहुत अच्छा कार है चक्का है कार का शीशा है कार का बहुत अच्छा दिख रहा हैं।